कंप्यूटर दिखाई दे रहे है यहाँ पर कंप्यूटर के पास मे एक पेन भी और पेपर और स्टैप्लर दिखाई दे रही है और सामने एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है।

--और जस्ट सामने कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं पंखे दिखाई दे रहे हैं लाइटे दिखाई दे रही है और कई कंप्यूटर प्रिंट की मशीनें दिखाई दे रही है यह एक ऑफिस --

घर के पास में पेड़ लगा हुआ है और गमले भी रखे हुए हैं साइड में और यहाँ पर तीन स्टैचू दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे हैं काफी सुंदर नजारा है घर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।

--और यहाँ पर एक फोन भी दिखाई दे रहा है।

--पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके बाहर मे लिखा है पे योर बिल एण्ड रिचार्ज पोस्टपेड और यहाँ पर कांच का बड़ा सा गेट भी है और वो यहाँ पर कांच के गेट में परछाई दिखाई दे रही है। --

पे स्कूटी खड़ी हुए है ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहै हैं जाते हुए और यहाँ पर एक पुरुष खड़ा हुआ है साइड में --

और पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में कई बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ झुले भी लगे हुए हैं एक बच्चा दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ--

दीवाल सफेद कलर की है और साइड में और भी घर दिखाई दे रहे हैं वह भी बिल्कुल सेम है और थोड़ी सी कार दिखाई दे रही है यहा पर दो-तीन पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि छोटे हैं और घर काफी सुंदर--

कई अलग-अलग तरीके के फल दिखाई दे रहे हैं जो कि अधिक मात्रा में डलियों में रखे हुए हैं।

मंदिर काफी सुंदर है हद से ज्यादा और पीछे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और कई अधिक सुंद --